जिधर देखिये उधर ही खाली पेड़-पौधे नज़र आ रहा पहाड़ो में भी पेड़ निकल --

पूरा पेड़ पौधे से भरा हुआ हैं चारों तरफ हरे उम्म हरियल नजर आ रहा हैं नीला आसमान बहुत --

करके लिखा हुआ है में और एक आदमी कड़ाई में कुछ बना--